ये वो लगे हुए हैं ऐंड यहाँ पे दोपहर टाइम की पिक है ऐंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पेड़ भी --

यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर हैं एंड उन्होंने सेम कपड़े पहेने हुए हैं एंड यहाँ पे डांस होने वाला है लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं।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

एंड यहां पर सुबह के टाइम का ए पिक्चर एंड यहां पे मौसम दिख रहा है एंड यहां पर बहुत सारे बिल्डिंग भी दिख रहे हैं एंड यहाँ पे रोड है।

और यहां पे एक साइकिल खड़ी है एंड यहां पे एक बस है जो बस का कलर है व्हाइट एण्ड गेट का कलर है व्हाइट रेड ग्रीन एण्ड यहां पे --

घर है यहां पे बहुत सारे समान रखे हैं एण्ड यहाँ पे ड्रम वगैरा भी रखा हुआ है एण्ड यहाँ पे टू टी_वी है एण्ड यहाँ पे बहुत सारे पानी के फ़िल्टर भी लगे हुए है।

एक मैम है एन-- उन्होंने चप्पल पहनी हुई है एंड व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है एंड यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने कलर फुल कपड़े हुए हैं।

बहुत सारी मूर्ति रखी गई है एंड यहां पर दिया भी जल रहा है एंड यहां पे तांबे के बर्तन भी रखे गए हैं एंड यहां पर कटोरा भी रखा हुआ है एंड यहां पे भी है एंड यहां पे बहुत सारे कटोरा भी रखे गए हैं एंड यहां पे पोस्टर भी लगा हुआ हैं एंड यहां पे चांदी की भी मूर्ति हैं।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

यहाँ पे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं एक ग्रीन एंड वाइट कलर का घर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी।

इन आजू-बाजू पेट्स भी दिखाई दे रहे है और ये यह रात की पिक दिखाई दे रही है और यहाँ पे कुछ दुपट्टा भी डला हुआ है।